यह एक कंपनी है और कंपनी के साइड में बांस बंधे हुए हैं।

यह एक बहुत सुंदर योगासन है।

और इस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत से गिलास और कटोरी--

यह एक बहुत सुंदर स्विमिंग पुल है।

और इस कपड़ों की दुकान में ऊपर बहुत से कैमरे लगे हुए हैं।

बहुत सारी किताब अलग अलग सेक्शन की है।

यह एक खाटूश्याम का मंदिर है।